यह एक घर है घर के अंदर एक कमरा है।

बड़ी बड़ी बिल्डिंगस् भी बनी हुई हैं।

और बजरी और इटे का घोल दिया है उसके नीचे प्लेटे लगी है उसके ऊपर फिर ये--

चद्दर बिछा रही है उसके ऊपर पा--

यह एक गली है गली के बिल्कुल सामने एक नर्सरी है।

यह एक मैदान है मैदान के अंदर एक फैक्ट्री है।

जिनके ऊपर ब्लैक कलर की वायर भी लगी हुई हैं।

बोर्ड है जिसका कलर नेवी ब्लू है वहां मिलक की फोटो लगी है।

और यहाँ ये दुकान बहोत ही डेकोरेशन की हुई हैं इसके बाहर चीचे --

और वहां पर बैठने की जगह भी बनी हुई है।

और वहां बहुत अधिक मात्रा में फैन हैं और वहां तीन चेयर्स पड़ी हैं उनका कलर व्हाइट हैं।

डब्बे भी है डब्बों का कलर ब्राउन --

वहां दो बेंचेस रखे हुए हैं वहाँ पर एक--

और वह गोलाकार शेप में है।

यह एक स्कूल है जहां पर डांस प्रोग्राम हो रहा है वहां पर एक चेयर है और वहां स्टेज पर दो बेंचेज पड़े हैं।

वहां एक लड़की डांस कर रही है उसने हरे कलर की और लाल कलर की साड़ी पहनी है।